यह एक म्यूजियम का सीन हैं जिसके बहार बहुत बड़ा गेट हैं जिसका अंदर आदमी जा रहे हैं और घूम रहे हैं।

यहाँ एक रेलिंग दिया गया हैं जो लोहा का हैं ऊपर में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं और साइड में बहुत बड़ा गे--

यहाँ एक री- इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल सायन्स एंड ग-गैलेक्सी हॉस्पिटल है।

जिसका पिन कोड है पचासी तेतालीस तीस।